दू-तीन गो जिम करे वाला हई एकेगो इंसान करे।

लाल कलर का घर हई फिर उजर कलर के समान हई ।

अच्छा लागईत हेय पानी के डिब्बा उ हेय चुरी उ हेय अच्छा लागएत हेय इ देखे मे बहुत सुन्दर हेय ।

गाँधी जी के मूर्ति बनल हई उज्जर कलर के हरियर कलर के फूल छिटल हई।

उधर पेड़-उड़ हरियर कलर के कुछु-कुछु का पेड़ हय बहुत अच्छा हय इ देखे मे लगय हय सुन्दर बहुत अच्छा लागय हय देखे में |

आदमी आएल हई देखत हई सजवाट भी बहुत सुन्दर लग रही हई ।

पेड़ भी बहुत सुन्दर लगत हई देखे में बहुत अच्छा --

लड़की लोग हई इ सब नाचइत हई।

बोल बरेएत हेय पंडाल से घेरल हेय आ पूरा अँधेरा होईल हेय।

लाल पियर ब्लू हरियर सब कलर से हेय बहुत सुन्दर हेय भगवान जी के फोटो चरखुट हेय।

जिम बहुत सारा है ।

लड़का शर्ट अ जींस पहनले हेय फोन लेके फोटो घिचएत हेय बहुत बोल बरयत हेय सब अच्छा लागएत हेय देखे में बहुत सुंदर हेय।

बहुत बड़ा स्कूल हई अच्छा लगयत हई देखे में कुर्सी है सब कलर से रंगी हुई ।

सब साइकिल से जाएत हेय गुलाबी कलर से बहुत सुन्दर घर लगएत हेय देखे में।

नया निकली हई ओहे दिखावे थे बहुत सुन्दर हई अच्छा लगत हई देखने में पन्नी में सब पैक हई सब लोहा ।

मिठाई शिखर चिलगम चकलेट बिस्कुट चनाचूर --

मंदील में पूजा होइत है अच्छा लागइत हय देखे में।

लेडीज चूड़ी पहनले हई संखा पहनले हई साड़ी पहनले हई अंगूठी पहनले हई सब हाथ में --

बहुत बिल्डिंग बहुत बरका हई अच्छा लागत हई देखे में सब कलर डिज़ा है पेड़ -पौधा हरा -हरा बहुत सूंदर हई ।

गोल्डन सब कलर से हेय कपड़ा पसारल हेय सब कुछ से लागल हेय देखे में बहुत सुन्दर हेय अच्छा लागएत हेय देखे मे |

बहुत अच्छा है ।

हरियर-हरियर तानी तानीगो पेड़ हई बहुत सुन्दर देख में बहुत अच्छा लगते हई ।